एक रूम नजर आ रहा है जहाँ पर सभी मुजीसीयन्स दिख रहे है पर वह सभी स्टैचू मे नजर आ रहे है वहा एक महिला दिख रही है जिनके हाथ में विना है।

वहाँ पर जो बैग पहने हुए नज़र आ रहे है वही पर एक जो टेम्पो है वह दिख रही है बड़ी सी वह सफेद रंग की नज़र आ रही है और एक उड़ान पहिया दिख रहा है स्ट्रीट लाइट दिख रहे है और ग्रीन सिग्नल की लाइट दिख रही --